बड़ा सा ताजमहल दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर दो एक्टिवा खड़ी हुई है जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर तो कार भी खड़ी हुई है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर एक बल्ब भी लगा हुआ है येलो कलर का।

और जैसा कि मैं यहां पर चार पांच लोग कपड़ा धो रहे है जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पर कुछ लोग और हैं।

ये एक स्कूल है और यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑटो भी है।

और जैसा कि मुझे लग रहा है जहां पे--